उसने नीले कलर का टीशर्ट पहना हुआ है और निचे सफ़ेद कलर का पेन्ट पहना हुआ है | सामने एक और आदमी है जो कि उस्की बोनट को कलर कर रहा है और वो टीशर्ट पहना हुआ है और वो लोवर पहना हुआ है ।

सामने एक बोहत बड़ा हॉल है जिसमे एक लाइन बार से बोहत सारी बेंच लगी हुई है जिनके पीछे कुछ लड़के बैठे हुए हैं जो कि बेंच के ऊपर डिज़ाइन बना रहे हैं जो कि पेजों से डेकरैशन कर रहे हैं | सामने एक सर है जो कि शर्ट पेंट पहन हुआ है।

सामने कुछ लड़कियां है कुछ लड़के है और कुछ अंकल और आंटिया है जो कि चारो तरफ खड़े हुए हैं और यह एक मैरिज हॉल है।

पेंटिंग कथई कलर का किया जा रहा है और बगल में एक आदमी है जो की टीशर्ट पहेना हुए है पेंट पहना हुए है और एक सफ़ेद कलर की बाल्टी रखा हुए है जिसमे वो गाड़ी को साफ कर रहा है बाल्टी में पानी से|

एक दुकान का गेट खुला हुआ है जिसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है।

ऊपर छत बना हुआ है जिसमें क-ऊपर एक नीले कलर का किना लगा हुआ है।